च दो कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं और इसमें एक सफेद रंग की तार लगी हुई है मोटर के अंदर और कनेक्शन काले टंकी के--

अंदर लगा रखे हैं बाहर ये एक नीले रंग का गेट वाल दिखाई दे रहा--

और एक आदमी इसको चेक कर रहा हैं यहां पे बोर्ड भी दिखाई दे रहा है और एल_ई_डी लगी हुई हैं और यहां पे एक कुर्सी--

और काफी सारे यहां पर पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

यह जिम का हाल है। यहां पर काफी पार्ट्स पड़े हुए हैं। जहां पर लोग जिम करते हैं आकर।

और एक कुर्सी है और एक बेड है बेड पे चिट्टे रंग के--

संख्या में बैठे हैं और किसी के सर पे रूमाल भी बंधा हुआ है और एक आदमी ने यहां पे काले रंग का छाता पकड़ा हुआ है।